खाई दे रहा है यहाँ पर बहोत ही हरा-भरा मैदान है।

यहाँ पर चार पांच झंडे लगे हुए हैं यहाँ पर आदमी भी बहुत बै खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक से कपड़े पहने हैं एक से--

यहाँ पर कुछ लाल - लाल सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बड़े-बड़े तार के खंभों की जाली लगाई गई है।

मैदान में सुखी हुई मिट्टी दिखाई दे रही है यहाँ पर लाल रंग की पटरी सी दिखाई दे रही है यहाँ पे बहुत सारा मैदान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बैठने के लिए रंग बिरंगे कुर्सी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा मैदान भी दिखाई दे रहा है जाली के गेट लगाए गए हैं।

यहाँ पर बहोत ऐ एक सुंन्दर मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसके सामने बहोत अच्छे-अच्छे जंगले दिखाई दे रहे है यहाँ पर नीचे की और बहोत अच्छी ढ़लान भी बनी हुई है।

यहाँ पर ये दुकान लगी हुई दिखाई दे रही है इसमें बहोत बड़ी के तराजू भी टंगे हुई दिखाइ दे रही है यहाँ पर बहोत बड़े-बड़े बाट रखे हुए है।